जिसमे दो खंबे दिखाई दे रहे है आगे की तरफ और कुछ कचरा दिखाई दे रहा है।

यह एक बैंक कि फोटो है जिसके उपर दो बैरन लगे हुए--

यह सिल्वर कलर में एक गुफा दिखाई दे रही है छोटी सी जिसपे लिखा हुआ है बाघ गुफा।

और एक छोटा सा बछड़ा भी दिखाई दे रहा है एक साइकिल रखी हुई है और साइड में कुछ पड़ा हुआ है।

यह फोटो मंदिर की तीन छोटे-छोटे मंदिरों की है मंदिरों में मूर्तियां विराजमान है और मंदिरों के बीच में भी कुछ मूर्तियां लगाई गई है‍‍।